पाइप जैसे लगे हुए है अलग-अलग कलर के दिखाई दे रहे है जिसमें पानी में एक पर्पल कलर की बड़ी सी बत्तख प्लास्टिक की है।

रेलवे जैसा लाइन पूल बना जैसा दिखाई दे रहा है पानी में कुछ कलर जो--

टी.वी लगी हुई दिखाई दे रही है और उसके अंदर काउंटर बने हुए है जिसमें दो अलग-अलग कंप्यूटर और रखे हुए नजर आ रहे है।